सामने एक घड़ी लगाई गई है यहां पे बहुत सारे पेपर लटकाए गए दीवार पर यहां पे बहुत सारी--

यहां पे बहोत सारी चीजें मिलती हैं।

दीवार में बहु सारी लगाई गई हैं यहां पे झूमर लगाए गए हैं यहां पे लाइटें लगाई गई हैं।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

यह एक वॉल की तस्वीरें यहां पे बहोत सारे डब्बे--

सामने बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है।

यह एक नदी की तस्वीरें है यहां पे बहोत गहरा पानी है यहां पे एक नाव खड़ी है।

यहां पे लालटेन रखी हुई है यहां पे चार्ज रखा हुआ है।

यहां पे दुकान भी बनी हुई है और यहां पे बहुत सारी--

सफेद कलर की टंकी रखी हुई हैं।

यहां पे गाड़ी खड़ी है जो सिल्वर कलर की है यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

यहां पर बहोत सारे गमले रखे हुए हैं यहां पे बोर्ड लगा उसे पे पर्ची लगी हुई है।

प्रार्थना हो रही है यहां बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं स्टैंड अप के उसमें यहां पे सामने दो टीचर खड़े हुए हैं।